यहां पर मैं इनके ऊपर कुछ गुड़हल के फूल चढ़े हुए भी देख पा रही हूं।

जो देखने में बहोत ही सुंदर लग रहा है।

इस दृश्य में मैं बहुत सारे बर्तनों को--

के ऊपर मुझे पीछे टाली है जिसमें बहोत सारी ईंटे और ऊपर बोरी रखी हुई है।

आगे की तरफ एक रोड है जिस पे--

यहां पर मैं जमीन पे रखे हुए कुछ बुट्टो को देख पा रही हूं।

कुछ चार पहिया वाहन खड़ी हुई है।

जो कि एक सर्कल में है।

बगल में कुछ ईंटो को लाइन से लगाया गया है।